वहां पर जेंट्स लेडिस खड़े हैं लाइट हैं।

और जेंट्स भी हैं और काफी बड़े बड़े पेड़ हैं।

लाल और फिरोजी ब्लू अं ब्लू कलर की ड्रेस में--

एक स्टेज पे कुछ लड़की लड़के अपना प्रोग्राम कर रहे हैं।

एक जेंट्स कुर्सी पर बैठा हुआ फोन पर बात कर रहा है और एक खड़ा है चश्मा लगाए हुए--

एलो कलर की कैप ओढ़ रखी है छत पे काम कर रहे है थोड़ी से।

लोहे का गेट है और एक बोर्ड लग रहा है।

एक शॉप हैं काफी सारे खाने बने हुए अलमारी में।